इसमें देख पा रहें हैं की सबसे पहले तो इसमें कोई ग्रीन पेड़ दिख रहा है जो बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा है और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट नजर आ रहें हैं अपार्टमेंट नजर आ रहें हैं।

और यहाँ पे दो-दो चार पाँच लोग हैं और पीछे साइड भी बहाेत सारे लोग हैं और ये पानी का बौछार भी नजर आ रहा है। ब्लू कलर से नीचे उसका प --

पिक में हमको नजर आ रहा है की एक बंदा है जो की अ आयरन यूज़ कर रहा शर्ट है शर्ट के ऊपर और पीछे में ऑरेंज ब्लैक में बैलून्स नजर आ रहे --

में जैकेट है जो कि बोटिंग जैकेट है और पीछे में कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रहे है ग्रीन --